बैंक है बहुत ही छोटा बैंक है।

बहुत ही अच्छा साफ-सुथरा जीम है ।

बस इस मंदिर में बहुत ही पुरान मंदिर है।